एक दरवाजा है जिसके ऊपर लाल रंग का पेंट किया हुआ है दरवाजा लकड़ी का बनाया हुआ है।

जो की क्लीयरेंस लिखा हुआ है जिसके ऊपर और कुछ टाइमर बना हुआ है जिसमें पहला टाइमर है ऐट आठ से पांच ऑवरस है।

और कुछ सफेद रंग के तकिये भी है जिसके ऊपर एक नीले रंग का तकिया पड़ा हुआ है।

जहां पर एक नीले रंग की कुर्सी है जिस पर एक आदमी बैठा हुआ है।